स्टोर है उसमे एक बुक का दूकान बुक है जिसमे कई तरह का रंग का पेन है ।

हाई स्कूल है | हाई स्कूल का कलर ब्राउन कलर का है।

और एक स्टोर है जिम के सामने एक स्टोर है जो बुक के वगैरह का है जनरल स्टोर।